प्रस्तुत चित्र को वाटर पार्क के अंदर लिया गया हैं।

जिसमे हम कई तरह के झूले देख सकते हैं साथ ही एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा हैं।

और कई सारी लाइटे भी दिखाई दे रही हैं ।

और सड़क से लिया गया है जो की ऊपरी हिस्से को कैप्चर करता है।